बिल्डिंग के सामने की तरफ हमें एक पेड़ दिख रहा है और एक हमें तार भी दिख रहा है।

और यहाँ पर हमें बहुत सारी पेटिया भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें बहुत सारी बकरियाँ दिख रही है जिसमें की बहोत सारी बकरियाँ हैं जो वाइट कलर की दिख रही है | कुछ ब्राउन कलर की है और कुछ चितकबरे कलर की दिख रही हैं।

यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो रेड और वाइट कलर से पेंट की हुई है इस बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़किया है दरवाजे है।

लॉन्ड्री के नाम लिखे हुए हैं हॉस्पिटल लॉन्ड्री गेस्ट लॉन्ड्री हॉस्टल लॉन्ड्री सभी प्रकार की लॉन्ड्री सर्विस देते हैं यहाँ पर।

है और वहां बहुत सुंदर दिख रहे हैं और यहाँ इसकी छोटी सी नाक भी है और नीचे बहुत ही गड्डे जैसे दिख रहे हैं।

पर एक टॉवर है और बहुत ही यहाँ पर हरे-भरे पेड़ हैं और मकान भी है और हमें यहाँ पर एक रस्सी भी दिखाई दे रही है